यहां खुदाई काम चल रहा है एक व्यक्ति माप ले रहा है।

ये एक पाठशाला है जहां पे सब बच्चों को पढ़ाया जाता हैं।

टी शर्ट लटकाई हुई है इस दुकान में बहुत सारे शर्ट मिल रही है।

यहां पे छोटे-छोटे से भी बहुत पेड़ है ये बहुत बड़े पेड़ है।

साइड में एक फ्रिज में सोडा रखी गई है।

यह दौड़ने का एक्सरसाइज करने वाला मशीन है यह इलेक्ट्रॉनिक है।

यह पाइप की द्वारा कार वॉश कर रहा है।

यहां पे एक रोड़ हैसाइड में बहुत सारे ग्रुपस है।